एक डेली पार्लर दिखाई दे रहा है जहां पर दो ट्यूब लाइट दिखाई दे रही है सफ़ेद रंग की है।

एल.डी. डिग्री कॉलेज जोकि बोहोत बड़ा है।

स्टाल दिखाई दे रहे हैं जहां पर दो बड़े जार दिखाई दे रहे हैं जिसमें बिस्कुट रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बोहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है। नदी के आ --